इस फोटो में हमें एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है।

यहां तरह तरह के सी_सी_टी_वी कैमरा दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे फूल और पत्ते लगे हुए हैं।

यहां कुल्हाड़ी लखे हुए हैं यहां बहोत सारे ईटे लगे हुए हैं।

एक इंसान झाड़ू मारता हुआ दिखाई दे रहा है।

घर में बहोत सामान रखा हुआ है।

एक स्कूटी भी दिख रहा है।

यहां हमें एक काला गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहां लंबे लंबे हरे घास दिख रहे हैं।

यहां हमें दो इंसान दिख रहे हैं।

हमें बहुत सारे बादल भी दिख रहे है।

दीवाल का कलर ग्रीन और येल्लो है।

एक लड़का भी दिख रहा है और लड़के ने येलो कलर की शर्ट पहनी है।

ये सभी सामान बंबू से बने हुए हैं।

पीछे बहोत लंबे लंबे पेड़ दिख रहे है।

यहां हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

पीछे बहोत जंगल दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक नदी दिख रही है।

हमें साइड में बहोत सारे पत्थर दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक सैलून दिख रहा है।

पीछे में एक इन्सान अपनी दाढ़ी बना रहा है।

आगे तीन चेयर दिख रहे हैं।

इस दुकान में बहोत सारा समान रखा हुआ है।

पीछे हमें कुछ स्कूटी और बाइक दिख रहे है।

साइड में बहोत सारे घर भी दिख रहे हैं।

बहोत सारे शीशे भी लगे हुए हैं।